दूर बाइसिकल में लोग जा रहे हैं दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर का गेट है।

सड़क दिख रही है खुला थोड़ा थोड़ा आसमान दिख रहा है।

ये बैट एंड बॉल दिख रहा है।

और थोड़ा झालर भी दिख रहा है दो आदमी खड़े हुए हैं।

रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है मुंह उनका नहीं दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे हरियाली है।

वो आदमी ऊपर हाथ करा हुआ है।

राइट हैंड साइड पे ईंटे रखी हुई है।

एक आदमी बाइक पर जा रहा है।

ऑटो खड़ा हुआ है बहुत सारी दुकाने हैं।

दरवाजा देख रहा है दरवाजे के ऊपर डायमंड करके लिखा हुआ है।

ये एक जिम खाना है यहां पर बहुत सी मशीनें रखी हुई है काला कलर का।

एक औरत चल रही है गाड़ी खड़ी है।

एक सड़क दिख रही है।

नीले रंग का आसमान दिख रहा है।

यहां पर प्लास्टिक बकेट है बिक रहे है मग बिक रहा है।

शैंपू की बॉटल दिख रही है तेल दिख रहा है।

और पत्थर का दीवार बना हुआ हैं।

मैदान में दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी है।

पीछे लाल कलर की गाड़ी भी दिख रही है।

ब्लैक कलर का टेबल लगा हुआ है।

रेड कलर का स्पोर्ट जैसा लगा हुआ है।

यहां पर एल ई एक्स यू एस करके बोर्ड लगा हुआ है काले कलर का बोर्ड है।

यहां पर एक घड़ी दिख रही है।